और खिड़की वगैरा भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे पेड़ भी दिखाई दे रहे है काफी सारे।

यहाँ पे एक जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। जिसमे --

और ये मतलब जाने आने के लिए सीढ़ी वगैरा यहाँ पे लगी हुई हैं।

और फूल्स वगैरा लगे हुए है।

और ये मतलब रास्ता है।

खंभा वगैरा यहाँ पे दिखाइ दे रहे हैं।

यहाँ पे एक पानी का तालाब जैसा दिखाई दे रहा हैं।

टेंट वगेरा लगे हुए हैं और काफी सारे फूल्स वगेरा लगे हुए हैं टेंट पे।

उसके पीछे भी बिछा हुआ है।

पता नहीं लकड़ी जैसी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में।